उसमें बहोत सारी बतिया लाइट और बटन लगे हुए हैं खोलने के लिए।

ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यह कमल का फूल है।

मैं देख पा रही हूं कि यह गांव की एरिया है जहां बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सुंदर सुंदर डिजाइन से पौधों का कटिंग किया गया है।

बाइक खड़ी है साइकल खड़ा है।

बहुत सारे बिजली के खंभे नजर आ रहे हैं सामने एक बड़ा दीवाल भी है।

कंपनी लिमिटेड है जहां यहां विद्यु आपूर्तित होता है यहां कुछ लोग बैठे नजर --